सामने एक लाइट की पोल दिख रही है सामने घर भी दिख रहा है दूर में भी पिले सफ़ेद रंग के कुछ दिख रहे है।

तस्वीर में एक ऑटो स्टैंड दिख रही है जिसमें एक नीले रंग की बस भी है कुछ ऑटो वगैरह भी है जिसके पीछे ए. टी. यू। एल लिखा हुआ है एक आदमी एक बैग लेके खड़ा हैं।

बगल में सफ़ेद रंग घर भी है पीछे कुछ पेड़-पोधे है लगे हुए है सामने कुछ छोटे-छोटे गमले में पेड़-पोधे लगे हुए है।